पॅन्ट पहने हुई है और आंटी हई जो रेड साडी पहनी हुई है और ग्रीन कलर की बहुत सारी घास लगी है काफी अच्छे लग रहे है नजारा।

वे बालक है जो की उन्होने कार्यक्रम किया है।

छोटे बच्चे है जो की कुछ पी_टी कर रहे है पी_टी सीख रखे है काफी अच्छा है सफ़ेद कलर के टौर्च लगे हुए है नीचे जो की एक भईया है व्हाइट कलर --

इथे सफ़ेद कलर और ब्लाक कलर के टाइल्स लगे हुए है यहाँ पे योगा चल रहा है बहुत ही अच्छे बच्चे--

एक मैजिक खड़ा है व्हाइट कलर का काफी अच्छा रात हो रही है और आना जाना चलते जा रहा है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।